इस फोटो मे ताजे-ताजे हरे-हरे फ्रेश भुट्टे दिखाई दे रहे है।

यहाँ बहुत ही शानदार लाउडस्पीकर दिखाई दे रहा है लाउडस्पीकर के ऊपर फोकस भी नजर आ रहे है आस-पास कुछ घर है ऊपर बिजली के तार दिखाई दे रहे है।

और अपनी फोटो खींचवा रहें हैं सभी ने लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ है।

इस फोटो में भगवान की एक प्रतिमा है जिसका रंग रोनेरी है नीचे एक लड़का खड़ा है जो फोटो खिंचवा रहा है।

इस फोटो में नाई की एक दुकान दिखाई दे रही है जोकी बहोत ही अच्छी तरीके से मैनेज की गई है ।

कुछ लोग यहाँ पर व्यायाम नहीं कर रहे है।

कार्यालय के बहार एक महिला खड़ी है बाइक लगाई गई है और कुछ पत्थर और पौधे दिखाई दे रहे है ऊपर खुला आसमान है।